बिल्डिंग दिखाई दे रहा है व्हाईट कलर का यहाँ पे--

यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर लोग यहाँ पे च--

नीचे ग्रीन कलर का कॉरपेट बिछा हुआ है।

गालखा पहन के व्हाईट कलर का और सामने में--

बहुत सारे प्लेयर यहां पे खड़ा है और भी बंदा औरत लोग खड़ा है बैठा है यहां पे --

इस साइड में कुछ पॅकेट में--

पास में मछली दिख रहा है बहुत सारे मछली एक छोटा छोटा बड़ा ब--

अ दुकान में भी एक मछली बिक्रेता मछली बिक रहा है।

वाइट कलर का चेयर है जिसमें बहुत सारे--

एक मरून कलर का व्हील चेयर है कुछ पैकेट रखा हुआ है।

और लड़का लोग यहां पे कुछ काम कर रहे बातें कर रहे यहां पे फ्लोर में कुछ औरत लोग जा रहा है चल के --

उनका गेट दिखाया दे रहा है वो गेट भी सामने देख के--

यहाँ पे एक नदी दिख रहा है नदी में पानी कम है इसीलिए --

यहां पे एक बड़ा सा ब्रिज दिखाइए दे रहा है यहां पे बड़ा सा समुद्र के ऊपर एक ढलाई करके ब्रिज है ब्रिज में गाडवॉल भी है।

येलो कलर का पूल भी है जहाँ जो पेड़ बिल्डिंग का ऊपर तक गया है।

इधर आदमी लोग के आके यहां पे बैठ सकते हैं बैठके वह कर सकते है सुंदर जो ये एनवायरनमेंट का--

यहां पे ब्लू ग्रीन कलर का बोर्डिंग लगा हुआ है एक दुकान में उसके पांचो का गेट है।

शोपीस एंटिक शोपीस रखा है जो--

कोई बजा रहा है कोई बजा रहा है ऐसा मे उन लोगों के माथे में पगड़ी है ऊपर में मछली का हरिन का--